यहां पर इनका प्राइस भी दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक बैठने का स्टूल भी दिखाई दे रहा है।

यह एक दुकान है। वह काफी उधर कपड़े दिखाई दिए जा सकते हैं।

यह एक पेट्रोल पंप है इधर एक कुर्सी देखी जा सकती हैं तीन गाड़ियां है।

स्कूल की बसेस दिखाई दे रही हैं।

कुछ आदमियां भी है जो एक्सरसाइज कर रहे हैं।

कुछ व्यक्ति एक छोटा बच्चा--

यहां पे बहुत सारी बोतलें कुछ पैकेट्स --

एक कुल्लर भी देखा जा सकता है जो अंदर चटाई प लगा हुआ है।

छोटे छोटे फ्लावर पॉट भी दिखाई दे दिए जा सकते हैं।

इधर ग्रीन कुछ नेट टाइप में लगे हुए हैं।

यह एक गैराज टाइप दिखाई दे रहा है यहां पर एक लाल कलर की गाड़ी भी देखी जा सकते हैं।

और इधर थै थैलिया भी दिखाई देजी देई जा सकती है।

एक व्यक्ति कंप्यूटर में कुछ काम कर रहा है।

कुछ बच्चे झूले झूल रहे हैं कुछ बच्चे झूला झूला रहे हैं यहां पे कुछ औरतें भी दिखाई दे रही है।

इधर आस पास मे काफी दुकाने दिखाई देरी है।

जहां कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं।

म्यूजिक आइटम्स हैं जैसे गिटार --

यह एक रोड है इधर एक आइसक्रीम --